जहां पे एक लड़की एक डांस करती हुई दिखाई दे रही है।

जहां पे मुझे सुंदर सुंदर मूर्तियां दिखाई दे रहे हैं।

सामने में कुछ लोगों को देख पा रही हूं जोकि एक छोटे से घर के बाहर खड़े हुए हैं।